inkscape प्रयोग करके layers और boolean operations पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे * layers
filters boolean operations
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स 1204 os
inkscape version 0484
अब inkscape खोलते हैं dash home पर जाएँ और type करें inkscape
inkscape logo पर click करें
अब assignment _ 2 svg file खोलते हैं जो हमने पहले बनाई थी
मैंने इसे documents folder में सेव किया था
पहले हम inkscape में layers के बारे में सीखते हैं
layer menu पर जाएँ और layers विकल्प पर click करें
अब interface के दायीं तरफ layer palette खुलता है
default रूप से वहाँ layer है आप देख सकते हैं जिसका named layer 1 है
एक नयी layer जोड़ने या बनाने के लिए layer palette पर plus icon पर click करें
add layer named एक dialog box खुलता है
layer name text box में हम layer को एक name दे सकते हैं
मैं इस layer को eye name दूँगी
अब हम position drop down list पर क्लिक करके layer की स्थिति निश्चित कर सकते हैं
यहाँ तीन विकल्प हैं
above current इस layer को मौजूदा layer के ऊपर रखेगा
below current इस layer को मौजूदा layer के नीचे रखेगा
as sublayer of current दिखाता है कि यह मौजूदा layer का एक भाग होगा
मैं इसे above current की तरह स्थित करुँगी और add button पर click करुँगी
ध्यान दें कि layer palette में eye named एक नयी layer दिखती है
उसी तरह से bow named एक अन्य layer बनाएं
अब हमारे पास layer palette में तीन layers हैं
आगे layer को रीनेम करना सीखते हैं
पहले layer 1 पर double click करें और फिर इसे circle की तरह रीनेम करें
अपने canvas पर वापस आते हैं यहाँ 2 आँखें और एक bow bow है
अब इन आकृतियों को 2 भिन्न layers जो हमनें बनाई उनमें move करते हैं
mouse को खींचकर दोनों आँखों को चुनें
अब keyboard पर ctrl + x दबाएं अब आँखें अदृश्य हो गयी हैं
अब layer palette में eye layer पर click करें
canvas पर वापस आएं और ctrl + alt + v दबाएं
bow bow आकृति के लिए उसी क्रिया को दोहराएं
सारे objects को डीसलेक्ट करने के लिए canvas पर किसी खाली स्थान पर click करें
eye और lock icons layers को छुपाने और lock करने में मदद करते हैं
जब आप एक layer को छुपाते हैं तो आप बाद वाली निचली layer पर objects को स्पष्ट रूप से देखते हैं
जब आप एक layer को lock करते हैं तो आप उस खास layer को आकस्मिक रूप से edits करने से रोकते हैं
यह विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जब हमें बड़े और जटिल graphic नियत कार्यों को करना होता है
प्रत्येक layer के बायीं तरफ eye और lock नामक दो icons पर ध्यान दें
अब हम सीखेंगे कि इन्हें कैसे प्रयोग करते हैं
layers को lock और unlock करने के लिए lock icon पर click करें मैंने अभी bow layer lock कर दी है
ध्यान दें अगर एक layer locked होती है तो हम उस layer पर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं
अब canvas पर bow को चुनने की कोशिश करते हैं आप देखेंगे कि ऐसा करना संभव नहीं है
अब मैं bow layer को unlock करुँगी
अब मैं bow object को चुनने में और इसकी विशेषतायें बदलने में भी सक्षम हूँ
canvas पर layer को दृश्य या अदृश्य बनाने के लिए layer के बायीं तरफ eye icon पर click करें
मैं bow layer के लिए eye icon पर क्लिक कर रही हूँ
देखें कि canvas पर क्या होता है
अब मैं bow layer को duplicate करती हूँ
layer menu पर जाएँ duplicate current layer विकल्प पर click करें
ध्यान दें कि layer palette window में bow copy named एक नयी layer bow गयी है
लेकिन हम canvas पर एक नयी bow देख सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि bow layer पिछली layer पर ओवरलैप हुई है
ऊपरी layer पर bow चुनें और दोनों bows को देखने के लिए इसे एक तरफ move करें
circle layer चुनें
canvas पर आँखों और bows को घेरे हुए एक ellipse बनाएं इस पर नारंगी रंग करें
अपने ऊपर अन्य objects के साथ ellipse background में दिखता है
layers palette में plus icon के आगे चार icons चुनी हुए layer को स्थित करने में मदद करते हैं
पहला icon चुनी हुई layer को सबसे ऊपरी layer बना देता है
circle layer वर्तमान में चयनित है
देखें कि क्लिक करके circle layer अब सबसे ऊपरी layer बन जाती है
आखिरी icon चयनित layer को सबसे निचली layer बना देता है
इस icon पर click करें ध्यान दें कि circle layer अब सबसे निचली layer है
दूसरा icon चयनित layer को बस एक layer ऊपर उठाता है
इस icon पर click करें circle layer eye layer के ऊपर moved हो गयी है अतः आखें नहीं दिखती हैं
तीसरा icon चयनित layer को बस एक layer नीचे करता है
इस icon पर click करें अब circle layer eye layer के नीचे moved हो गयी है
अतः इस प्रकार ये चार icons उपयोग किये जाते हैं
अंत वाला माइनस icon चयनित layer को मिटाएगा bow copy layer को चुनें और इस पर click करें
देखें कि bow copy layer ज़्यादा layer तक नहीं दिखती है
blend mode पूरी layer पर blend filter लागू करने का shortcut है
इसका मतलब है कि अगर objects चयनित layers पर overlap होते हैं तो inkscape दो objects को pixelbypixel मिलाएगा
अतः filters को दृश्यमान बनाने के लिए circle layer को ऊपर रखें
blend mode की drop down सूची पर click करें ध्यान दें इसमें 5 विकल्प हैं
पहला विकल्प जो normal है layer पर कोई filter नहीं जोड़ता है
अब मैं इस पर click करती हूँ देखें कि layer पर कोई भी filter नहीं जुड़ा है
आगे multiply पर click करें
ध्यान दें कि सबसे ऊपरी layer पर objects light को filters करते हैं जिससे कि सबसे निचली layer पर objects दृश्यमान हो जाएँ
उसी समय पर overlap क्षेत्र में यह गहरे रंग की form में रंगों को blends करता है या मिलाता है
अगला विकल्प screen है
ऊपरी objects को देखें; ये नीचे के objects के रंग को हल्का करता है
अतः overlap क्षेत्र में यह रंगों को हल्का करने के लिए मिश्रित करता है या मिलाता है
darken चुनें ऊपरी layer के objects निचली layer के objects को गहरा करते हैं
अब आखिरी विकल्प चुनते हैं जो lighten है यहाँ ऊपरी objects निचले objects को हल्का करते हैं
अगर किसी भी समय आप blend mode को वापस normal में लाते है तो अब तक लागू हुए blend filters अदृश्य हो जाते हैं
filters menu में हम बहुत अधिक filters देख सकते हैं
कोई विशेष filter लागू करने के लिए पहले object चुनें और फिर वांछित filter पर click करें
दोबारा circle layer को नीचे move करते हैं
अब एक आँख को चुनें filters menu पर जाएँ blur और fancy blur चुनें
आँख पर बदलाव को देखें
अब मैं दूसरी आँख को चुनती हूँ filters menu पर जाती हूँ bevel और smart jelly चुनती हूँ
एक बार फिर आँख पर लागू हुए बदलावों को देखें
अब bow चुनते हैं filters menu पर जाएँ scatter और air spray चुनें
bow bow air sprayed जैसी हुई दिखती है
blend mode के नीचे opacity विकल्प चुनी हुई layer की अपारदर्शिता को कम करने में मदद करता है
circle layer चुनें
opacity level को समायोजित करें और ellipse में बदलाव को देखें
आगे हम boolean operations के बारे सीखते हैं
path menu पर जाएँ ये उपलब्ध boolean operations हैं
उपलब्ध आकृतियों को एक तरफ रखें
हरे रंग का एक वर्ग और लाल रंग का एक वृत्त बनाएं वृत्त को वर्ग की भुजा की तरफ उसके ऊपर रखें
दोनों को चुनें path menu पर जाएँ और union पर click करें देखें कि दोनों आकृतियां अब एक साथ जुड़ गयीं हैं
अब इस क्रिया को अनडू करने के लिए अपने keyboard पर ctrl + z दबाएं
दोबारा दोनों चुनें path menu पर जाएँ
difference पर click करें और देखें क्या होता है
इस क्रिया को अनडू करने के लिए दोबारा ctrl + z दबाएं
दोबारा दोनों objects को चुनें path menu पर जाएँ और intersection पर click करें और आकृति में बदलाव को देखें
इस क्रिया को अनडू करने के लिए दोबारा ctrl + z दबाएं
दोबारा दोनों objects को चुनें path menu पर जाएँ और exclusion चुनें
आकृति में बदलाव को देखें
दोबारा ctrl + z दबाएं
एक बार फिर दोनों objects को चुनें path menu पर जाएँ और division चुनें
विभाजित किये हुए वृत्त पर click करें और परिणाम देखने के लिए उस भाग को एक तरफ रखें
अब इन क्रियाओं को अनडू करने के लिए दो बार ctrl + z दबाएं
दोनों objects को दोबारा चुनें path menu पर जाएँ और cut path पर click करें
आकृति में बदलाव को देखें
cut path विकल्प तभी कार्य करता है जब object stroke रखता है पहले आकृति को अचयनित करें
अब किसी एक strokes को चुनें और इसे दृश्यमान बनाने के लिए एक तरफ move करें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
layers filters और boolean operations
यहाँ आपके लिए चार नियत कार्य हैं
गुलाबी रंग का एक आयत और हरे रंग का एक त्रिभुज बनाएं
त्रिभुज को आयत के ऊपर रखें
दोनों को चुनें union प्रयोग करें यह home icon की तरह दिखना चाहिए
layer का name home दें
दो वृत्त बनाएं
एक को दूसरे के ऊपर रखें
दोनों को चुनें और difference प्रयोग करें
यह अर्धचंद्राकर की तरह दिखना चाहिए
* एक दीर्घवृत्त बनाएं
10 कोनों वाला एक star बनाएं
इसे दीर्घवृत्त के centre में रखें
दोनों को चुनें और exclusion अप्लाई करें
crescent और star named दो layers क्रमशः बनाएं
crescent आकृति काटें और crescent layer पर paste करें
उसी तरह से star आकृति के लिए करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है
इस mission पर अधिक जानकारी दर्शाये link पर उपलब्ध है
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं